आ रहा है यहां पर हमे बेंचेस भी--

हमें बड़ी सारी समुद्र में --

ब्लैक कलर की बैलूंस भी--

हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

जहां पर हमें एक टीचर या सिस्टर नजर--

कहां पर हमें व्हाइट कलर की--

कूल लिखा हुआ नजर आ रहा हैं।

एक पिक्चर भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।